जिस रेस्टोरेंट के अंदर बहुत सारे टेबल और चेयर और सोफ़े भी रखे होए नजर आ रहे है।

उन टेबलों के ऊपर रखी हुई जग और एक पौधे भी दिखाई दे रहे हैं।

और टिशु भी नजर आ रही है एक पेंटिंग भी बनाई हुई है ।

और उसी के पास एक बिल्डिंग भी दिखाई दे रही है।

और इस चित्र में बहुत सारे कपडे भी पसारे हुए नजर आ रहे हैं।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

इस लॉन में एक बहोत लंबी लाइट भी लगी हुई है और घास भी--

और टेबल भी लगी हुई दिखाई दे रही है।

इस झील के किनारे पर बहुत ऊंची पहाड़ पहाड़ी पे छोटे छोटे पेड़ और पौधे नजर आ रहे हैं।

यह एक मैरिज हॉल का दृश्य है जिस मैरिज हॉल के अंदर बैठने के लिए बहुत सारी चेयर लगी हुई नजर आ रही है।

यहां पे एक बड़ी पीपल की पेड़ भी नजर आ रही है।

यह दृश्य में एक कपड़ो की दुकान दिखाई दे रही है।

और उसके सेकंड फ्लोर पर एक जिम भी बनाया गया है।

और उस बिल्डिंग के सामने बहोत सारी स्कूटी और बाइक पार्क की हुई दिखाई दे रही--

और उसी के ऊपर एक एल्वेस्टर भी लगाया हुआ नजर आ रहा है।

इस चित्र में एक हॉस्पिटल नजर आ रहा है।

जिस मंदिर के पास थीं व्यक्ति जाते हुवे नजर आ रहे हैं।

और दो कार भी पार्क किए हुए नजर आ रहे हैं।

जहां पे एक एक्सप्रेस गोल्ड लोन का स्टीकर भी लगाया हुआ है।